लग रहे हैं कुछ फन--फंक्शन है जहां पर वो नए-नए कपड़े पहने हुए हैं।

यह तस्वीर सैलून का है जहाँ पर एक लड़का अपने कुर्सी पे बैठ बैठा हुआ शीशा के सामने है।

नॉइस यह तस्वीर सरस्वती पूजा का लिया गया हुआ जहाँ पर एक लड़का उन्हें माँ सरस्वती को प्रणाम कर रहें हैं ।

नी तस्वीर ले रहा और एक बस एकदम --

तस्वीर पे एक स्कोर्पिओ को ऊपर खड़े कर के एक व्यक्ति उसे सफ़ाई कर रहे है।

यह तस्वीर किसी रेस्टूरेंट का लिया गया हुआ है जहाँ पर खाना आने के वेट कर रहे हैं और यहाँ पे बहोत सारे बच्चे --

खुला हुआ है और साइड में कुछ गोलगप्पे इत्यादि के दुकान लग रहे है।

यह तस्वीर में एक व्यक्ति अपने भासन दे रहे हैं।

यह तस्वीर बहुत ही अत्यधिक सुंदर लग रही है क्योंकि यहां पर बहुत सारे हरे-हरे पेड़ों के बीच में मंजिल बहुत ही सुंदर लग रहे हैं।

जहां पे बोहत ही अत्यधिक मूर्ति एकदम मने लेग रे हैं जैसे सोने का मुर्तिया हमारी सामने हो।

यहाँ पे एक एक मकान की प्लास्टर हो गई हो और पीछे वाले मकान बहुत ही बड़े मकान लग रहे है और बहुत ही सुन्दर लग रहे है डिज़ाइन भी बहुत मस्त---

बहुत ही अनेक रंगों के हैं।